इस तस्वीर में हमें एक लड़की दिखाई गई है जो नृत्य कर रही है यहाँ पे पीछे डेकोरेशन कि गई है स्टार्स लगे हुए है जो गोल्डन कलर के--

और यहाँ पे छोटी छोटी गिटार और टेडी बियर वगैरह दिखाए गए है यहाँ पे गमले है जिनमे अ फ्लावर लगे हुए है और यहाँ से वहाँ तक एक बेल नजर आ रही है।

इस तस्वीर में हमें एक मूर्ति देखने को मिल रही है आ ये एक पत्थर पर कलाकृति कि गई है इस पर जिसने एक मूर्ति बना दी गई है इसके अलावा यहाँ पर छोटी-छोटी--

इस तस्वीर मे हमे एक तालाब दिखाया गया है तालाब मे पानी भरा हुआ है पीछे यहाँ पे बड़े बड़े--

और यहाँ पे दो लड़के दिखाए गए है इसमे ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहन रखी है पीछे एक रेड कलर का बैग टाँगे हुए है इसके अलावा यहाँ पे सामने एक लड़का है।